बोहोत सारा मकान है। बोहोत सारा पोस्टर फिलम का लाग हुआ है यहाँ --

यहाँ पे ये हो रही है लड़का-लड़की --

पेड़-पौधे बहुत सारे यहाँ पे लगे हैं ऊपर खुला आसमान है ऊपर से प्लस्टर कर के डिजाइनिंग में मकान बनाया गया।

आर हरमुनिया ई सब गिटार ई सब यहाँ पे बैठा दिया गया है उसका फोटो घिचा ढोलक पीछे ऊपर में टंगा हुआ है हर एक इंसान की मूर्ति है यहां पे।

काम बंद हो रही है। फोटो खिचवा रहे हैं। बाहर मे सब ऐसे ही काम करते हैं कपड़े पेहेन के।

चाय है चाय का कप है और यहाँ पर बहुत दूर मे पहाड़ है एक छोटा-सा घर है एक ताड़ का पेड़ सब है ताड़ का पेड़ बहुत सारा है बड़े - बड़े पेड़ जो आते हैं जंगल झाड़ बहुत सारा है।

एक नदी है इसमें कुछ लोग सब नहा रहे है एक अंकल भी वहां पे नहा रहे आ के ।

और सामने-सामने में जंगल झाड़ है कुछ घर भी वहाँ पे है पेड़-पौधे सब के रखे गए हैं।